यहां पे व्हाइट और ब्लू कलर के बलूंस लगे हुए है काफी अच्छा शोरूम है।

ये एक स्कूल है जो कि काफी बड़ा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है स्कूल यहाँ पे कई सारे --

ये एक स्पोर्ट्स की शॉप है जो कि न्यू ओपनिंग हुई है।

इधर एक गार्डन दिख रहा है जहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग भी बनी हुई है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है।

इ यहाँ पे एक बड़ा-सा कॉलेज दिख रहा है जहां पे काफी बड़े बहोत सारे रूम है।

यह एक नेशनल पार्क दिख रहा है जहाँ पे एक गेंडा है वो घास खा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।